खुली दुकान के ऊपर एक घर है

इस फोटो में एक मॉल है जहां खाने का सामान रखा हुआ है| एक बास्केट है जिसमें प्याज रखे गए है टोकरी का रंग लाल है ऊपर लाइट लगी हुई है।